बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में एक गुफा दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में बहुत सारे फूलों की माला दिखाई दे रही--

मुझे इस फोटो में कार दिखाई दे रही है मुझे--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

एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।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

बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में पोस्टर दिखाई दे रहे है।